ते अपने दोनों दोनों हाथों को पकड़ कर --

इस चित्र में हम देख पा रहे हैं की एक बड़ी सी मूर्ति पडी हुई है और उसके --

खुला सा गार्डेन है और इसके सामने बहुत सारे बसे पडी हुई है और लोग बैठे हुए जा --

रास्ता बना हुआ है। गेट बना हुआ है। जिसके ऊपर लिखा हुआ सर्वोदय उच्च प्र प्राथमिक विद्यालय।

इस चित्र में हम दिख पा रहे हैं की यह एक ए.सी सर्विस बा।

इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि यह अ एक ट्रेन बनी हुई है और पीछे --

उसको एक धागे से बांधा गया है। उसके सामने चारा रखा गया है।

दो जने अ उसके पीछे कुछ काम कर रहे है।

उसके ऊपर कैफेटेरिया लिखा हुआ है। कोकोकोला के बै बोर्ड्स लगे हुए हैं।

इस चित्र में हम देख पा रहे हैं की अ बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिखाई पड़ रही है। हर --